यह एक ब्रिज है। ब्रिज के नीचे बहुत ही बड़ा गंगा पानी नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा खूबसूरत देखने को मिल रहा है जोकि इसमें भी पीलापन दिख रहा है।

इसमे दो तीन ऐसीयां नजर आ रही हैं। बहुत प्रकार की ऐसीयां हैं। बहुत अच्छी नजारा। इसमें पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ख़ूबसूरती के मामले में बहुत प्यारा लग रहा है।